इस दृश्य में बहुत सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं।

इस दृश्य में बाहर में बहुत सारी बाइक वगैरह लगाई हुई हैं।

साइड में भी एक दुकान है जिसका आधा शटर खुला हुआ है।

ऊपर में बहोत सारा काला रंग का तार खींचा हुआ है।

ऊपर से एक तार खींची गई है जो कि काले रंग के है।

सभी केबिन में एक एक बोर्ड लगाया हुआ है जो की सफेद रंग की है एक चेयर दिखाई पड़ रही है।

टेबल का कलर भूरा है नीचे बहोत सैनिटरी पैड्स रखे हुए हैं।

साइड में कटा हुआ फोम भी दिखाई पड़ रहा जो कि सफेद रंग--

ये दृश्य में कपड़े का दुकान दिखाई पड़ रहा है शीशे के टेबल पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

नीचे में बहुत सारे स्कर्ट्स लगाई हूं स्कर्ट्स का कलर रंग बिरंगा है।

नीचे का घास पीला दिखाई पड़ने लगा है।

पीछे बहौत बड़ा बड़ा पेड़ है जोकि हरे रंग का उनका ताना तना काले रंग का दिखाई पड़ रहा है।

पीछे पहाड़ दिखाई पड़ रहा है जिस पे पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं।

यह दृश्य एक डांस स्टेज का है यहां पे बहुत सारे बच्चे डांस कर रहे हैं।

नीचे बहोत सारा डंबल्स रखे हुए हैं और मैट बिछाए हुए हैं जो की नीले और लाल रंग के हैं।

आगे में पीले रंग का डब्बा है जिसपे बहुत सारी मछलियां है।

इस दृश्य में पीछे की और बहुत सारे बैलून दिखाएं पड़ रहा है जो की लाल रंग के हैं ऊपर लाल और पीले और गुलाबी रिबन लगाए हुए हैं।

इस दृश्य में टेबल दिखाई पड़ा सभी टेबल में एक बेसिन और नल लगाया हुआ है।

उस पे एक लाल रंग का सी_एन_जी गैस वाला रखा हुआ है साइड में दो तीन गोदरेज दिखाई पड़ रहे है जो कि भूरे और क्रीम कलर के हैं।

एक लड़की अपने हाथ में एक पेपर ले रखी है जो की सफेद रंग का है।

लेफ्ट साइड एक चार्जर खोसा हुआ दिखाई पड़ रहा है जो की सफेद--

पीछे में बहोत सारे पेड़ हैं जो कि हरे भरे हैं नीचे अलग अलग खाने बनाए हुए हैं और उसमें कुछ कुछ पेड़ हो गए हैं।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

आगे में दो तीन पटरे रखे हुए जो की लकड़ी के बनाये हुए हैं।

आगे टेबल पे बहोत सारा बुक और नोटबुक रखे हुए हैं।

जहां ऊपर में दो फूलदान रखे हुए हैं और उसमें दो शो प्लांट्स लगाए हुए जो की हरे रंग के हैं।

आगे ई लव इंडियन ऑयल लिखा हुआ है।